ये देखिये फिश मार्केट है यहाँ पे तीन आदमी बैठके फिश वगैरा काट रहे है और बेचते है।

ये देखिये क्लीनिक है इसका नाम है श्वास क्लीनिक और नीचे उनका लोगों भी बना हुआ है बोर्ड पर भी बना हुआ है।

ये एक कपड़ो की दुकान है आप देखेंगे बाहर काफी सारी डम्मीज लगी हुई है अग अलग अलग कपड़े पहन के अलग अलग कलरस के --

काफी सारी पटरियां ऐसे ही खाली है बीच में एक डॉग है जो लड़ रहा है दुसरे डॉग से और पीछे से एक डॉग और आ रहा है।

ये एच डी ऍफ़ सी का बैंक है आप देखिये उनका बोर्ड भी लगा हुआ है ब्लू कलर का और लोगो भी बना हुआ है रेड वाइट और ब्लू कलर में।

दो आदमी खड़े होके बाते कर रहे है चाय पी रहे है साथ में और एक आदमी उनके पीछे ही खड़ा हुआ है।

परफेक्ट डिस्टेंस भी मेन्टेनेन किया हुआ है सभी बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे है और काफी अच्छी लाइट्स लगी हुई है उपर वाइट कलर की वाइट कलर की टाइल्स लगी है।